लाल कलर हरा सफ़ेद वगेरा-वगेरा सब कुछ दिया गया हैं सब आते हैं छोटे-बड़े जितने हैं सभी कोई टिकट से सब कुछ खरीदते--

नीचे भी पूरा साफ- सफाई है वाइट कलर में पूरा पेंट किया गया है बेंच काला में है सब चीज है।

यहाँ पैसा लेकर दिखाते है बिना पैसा का नहीं जो आए टिकट ले उसके बाद दिखाते हैं।

यहाँ पे घर है पार्क है ये पुरा गुलदस्ता में जो है आदमी पानी पूरा डाल रहा है गैस --